एक पिंजरा दिखाई दे रहा है जो बिम्बु से बनाया हुआ है वो ब्राउन कलर का है।

दो लड़की दिखाई दे रही हैं जो यलो और रेड कलर का कपड़ा पहने पहना हुए है।

सारे खिड़कियां दिखाई पड़ रहा है और बहुत सारा लड़की लड़का दिखाई पड़ रहा है जो ब्लैक रेड सफेद कलर का कपड़ा पहना हुआ है।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

कुर्सी दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर का और एक टेबल दिखाई दे रहा है जो ब्राउन व वाइट कलर से बनाया हुआ--

बहुत सारा कॉपी दिखाई पड़ रहा है जो सफेद और ऑरेंज और ब्राउन कलर से है।

कंप्यूटर दिखाई दिए रहे जो ब्लैक कलर का है।

बहुत सारे हैंगर दिखाई पड़ रहा है ब्राउन कलर का।

सारा ग्रास भी दिखाई पड़ रहा है और दो लड़का दिखाई दे रहा है जो ब्लू और ब्राऊन कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

एक लड़का दिखाई पड़ रहा है जो ब्राउन कलर का शर्ट पहना हुआ है।

पेन दिखाई दे रहा है जो ब्लू और ब्लैक कलर का है। बहुत सारा हैंगर दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर का।

एक घर दिखाई पड़ रहा है जो ब्लैक और सफेद कलर से बनाया हुआ है।

एक प्लेग्राउंड है जो ग्रीन कलर से बनाया हुआ है।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

चेयर भी दिखाई पड़ रहा है ब्राउन कलर का।

बहुत सारा लोहा और तार दिखाई दे रहा है।

कार दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर का।

एक घर दिखाई दे रहा है जो येलो और सफेद कलर का है।

और दो कारपेट दिखाई दे रहा है जो रेड और ग्रीन कलर का है।

बहुत सारा गर दिखाई पड़ रा है जो सफेद कलर का है।

का दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर का।

समान रखने के लिए बनाया हुआ है लोहा से जो रेड और सफेद कलर का है।

सारा लड़की और लड़का दिखाई दे रहा है जो सफेद और रेड कलर और ब्लैक कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

बच्चा दिखाई दे रहा है जो रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

एक लड़की दिखाई दे रही है।

लड़की और लड़का दिखाई दे रहा है जो ब्लू शर्ट पहना हुआ है।

बहुत सारा तार भी दिखाई दे रा है और बहुत सारा लोहा भी दिखाई पड़ रा है।